ई काम कैसे किया जाना चाहिए या आपत्ति विपत्ति में कैसे एक्शन लिया जाना चाहिए।

रेस्टोरेंट में एक लड़का बैठा हुआ है और सामने टी_वी --

देख रहा है कौन चीट कर रहा है कोई नहीं कर रहा है लड़के लोग जो है अपने--